कुछ सिख आदमी लग रहे है का जो है मूर्ति है टांगा हुआ है साइड से कोई फोटो खीच रहा है सब जो है कोई मुकुट पहन के कोई टोपी पहन के कोई कुछ पहन के सब बैठे हुए है।